देखिये ये स्कूल है ये इस स्कूल का नाम गणपतराय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर है।

खूबसूरत लग रही है और ऊपर की तो आसमान ही नहीं दिख रही है | सारी तो वृछ से ही झप गई है और यहाँ पे --

तो बाप रे बाप ये तो सबसे बड़े वाली कार --

पास पास मे पाँच दिख रहे हैं और दूर तो बहुत ज्यादा चले गया और नीचे का भी देखिये कितना अच्छा है ऑरेंज कलर है |

इतना बड़े स्कूल मे पूरे फ्लोर पे बच्चे भरे हुए है व्हाइट कलर के ड्रेस पहने हुए हैं कोई ब्लू पहने है।

ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है हाँ हाँ मुझे लग रहा है ये संगीत हो रह है क्यूंकि देखिए न --

ये लाइट बत्ती तो हमारे घरो में भी ल --

पब्लिक्स भी है और यहां पे देखिये ना कितना साफ-सुथरा है बहुत ही अच्छा दिख रहा --

देखिये तो ये इसका दरवाजा ब्लू कलर का है और ये बहुत ही खटारा स्कूल लग रहा है।

और देखिये यहां पे एक पानी टंकी भी है जिस पानी टंकी का कलर व्हाइट और ऑरेंज है और देखिये दो --

और इ शादी के धर्मशाले में ये बना हुआ है जिसमें की आदमी लोग के शा --

अच्छा सजा हुआ है और स्टेज के बाहर में बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे बुफ़े सिस्टम है।

और बहुत ही अच्छे तरह से गार्डन को अच्छे से रखा जाता है और स्कूल भी बहुत ही अच् --

लेकिन ये दिन का समय है इसलिए अभी लाइट नहीं जला है रात के समय में लाइट जलेगा।